पत्थर से बना कुछ मूर्ति भी दिखाई दे रहा है और ऊपर से घेरा हुआ इस साइड एक पीला कलर का स्कूल जैसा दिखाई दे रहा है खिड़की दब रहा है।

चप्पल से धराया हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारा है।

और साइड में एक लेडिस एक बच्चा एक मर्द दिखाई दे रहा है आसमान का रंग उजला दिखाई दे रहा है बहुत सारे

और साइड बहुत सारे खेत में हरे भरे खरियाली छाए दिखाई दे रहा है बहुत दूर में पेड़ पौधा लौक रहा है हरे भरे दिखाई दे रहा है।

ये किचन जैसा दिखाई दे रहा है यहां पे छोलनी सा टंगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे--

यहां पे सीसा दिख रहा है यहां पे वो साइड खुर्सी पे बैठे एक आदमी लिट को पीछे चला रहा दिख रहा है पंखा लगा हुआ दिख रहा है।

और पूरा दिखाई दे रहा है बहुत सारे मोटरसाइकिल से बाहर दिखाई दे रहा है एक स्कूटी पर एक लड़की चल रही दिखाई दे रहा है--

खाते खाते देख रहे है सब थोड़े थोड़े दूर पर ला हटकर लगा हुआ दिखाई दे रहा है उस बहुत सारा पेड़ पौधा से दिखाई दे रहा है यहां पर गोल घर--

यहाँ पे सोलर धरा हुआ दिखाई इस साइड एक आदमी दिखाई दे रहा है उस साइड एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक मोटरसाइकिल को को खड़ा किया गया है ऊपर पे लड़का एक व्हाइट कलर का स्कूटर दिखाई दे रहा है यहां पे शूज दिखाई दे रहा है बोर्ड दिखाई दे रहा है।

फुटबॉल खेल रहा है बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे खेल रहा है उस भी फुटबॉल खेल रहा है।

कोणसा तो शर्ट दिखाई दे रहा हैं पंखा चल रहा हैं दिखाई दे रहा हैं वहाँ पे एक और पंखा चल रहा है बॉल भर रहा हैं दिखाई दे रहा हैं।

रेड कलर से भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे एक आयुष्मान हॉस्पिटकर का पोस्टर सटा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पे दिखाई दे रहा है घर से दिखाई दे रहा है घर पे कुछ लग--

यहां पे एक बगुला दिखाई दे रहा है बहुत सारे हरियाली छाए हुए है खेत में धान सब दिखाई दे रहा है पानी दिखाई दे रहा है एक पैर उठाया हुआ दिखाई दे रहा है और इधर-इधर मुड़ी घुमा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ बांधा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है अंधेरा लग रहा है ऐसे ऐसे लग रहा हैं।

बादल दिखाई दे रहा है आसमान थोड़ा-थोड़ा नीला दिखाई दे रहा है।